उम्म कुछ बोलते हुए नजर आ रहा है। ऊपर छत में पंखें लगे हुए हैं और लाइट भी --

दिए गए इमेज में हमें तीन आदमी दिखाई दे रहे है। वो कुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कढ़ाई है।

दिए गए ये चित्र में हमें एक लड़का ज उधर की तरफ जाते नजर आ रहा है। जिसने नीले रंग की जींस पहनी हुई है और सफेद रंग का शर्ट --

दिए गए चित्र में हमें एक सफेद रंग की कार दिखाई दे रही है वह एक पक्के सड़क पे खड़ी है और उसके आस-पास कहीं --

अ बाइक हैं खड़े हैं और कुछ आदमी भी खड़े हैं और आस-पास में कई सारी बिल्डिंगें भी हैं।

दिए गए हैं चित्र में हमें एक बांग्ला नजर आ रहा है उस बंगले का कलर सफेद रंग का है उसके मैन --

इसके ऊपर नीले रंग का बोर्ड है। उसमें लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और दूसरी तरफ इंग्लिश में भी --

सामने हमें एक जंगल नजर आ रहा है जिसमें बड़े-बड़े पेड़ न नजर आ रहे हैं जिसमें वो हरे रंग के हैं। उसी में छोटे-छोटे --

सामने एक हमें गांव दिखाई दे रहा है। ये गांव की सड़कें कच्ची हैं और बोहोत हरे-भरे पेड़ नजर आ रहे हैं। इसी सड़क के किनारे बिजली के खंभे लगे हुए हैं।

दिए गए चित् में हमे एक स्कैनर नजर आ रहा है जिससे हमलोग पेमेंट कर सकते हैं और उसके पीछे हमें कई सारे खाने-पीने के पदार्थ नजर आ रहे हैं जिनमें --

दिए गए चित्र में हमे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है। जिसमें नारंगी कलर का बोर्ड लगा हुआ है। इसे राजेश्वरी बुक और उसके बगल में हमे --

दिए गए चित्र में हमें दिवाल नजर आ रही है उस दिवाल में एक बड़ा सा पोस्टर छपा हुआ है आरोग्य चिकित्सालय।

दिए गए चित्र में हमें एक काले रंग की गाय नजर आ रही है जो की हरे रंग का भूंसा खा रही है। उस गाय के गले में हमें लाल और भूरे रंग की रस्सी भी --

उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस हरे रंग का जिसमें सफेद रंग से लिखा हुआ है स्टेट बैंक ए.टी.एम. ।

दिए गए इमेज में हमें कई सारी चिड़ियां आसमान में उड़ती नजर आ रही हैं उसके नीचे कई सारे।

सुनहरे नारंगी रंग का और पीले रंग का है घास हरी रंग की दिखाई दे रही है सामने बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं।